यहाँ पे पोल एक गड़ा हुआ है उससे तार ले लेजाया गया है।

सामने में मुझे एक बड़ा सा--

लम्बा-लम्बा बनाया हुआ है प्लेटफार्म जैसा--

और दीवाल जो इस इस घर का है वो--

सामने में एक ग्रीन कलर का कुछ डब्बा दी--